अ मुल्कतानी मिट्टी लगा के आराम कर रहा है और एक नीले कलर का टावल पहने हुए है अपने सेफ की मसाज करते हुए दिख रहा है एक आदमी --